ये दीवार की कलर ब्लू है और नीचे टाइल्स लगे हुए हैं।

रेलवे स्टेशन पर ढेर सारे व्यक्ति हैं।

यह एक हॉल का दृश्य है इस हाल में ढेर सारे व्यक्ति हैं और हाल के बगल में ही एक दुकान है।

और घर के आगे बाउंड्री में रंग बिरंगे कलर किए हुए हैं।

और इस पोस्ट बॉक्स के पीछे एक खिड़की भी है।

इस फैक्ट्री में ढेर सारे पिलर की सहायता से ऊपर करकट दिया गया है।

मट्टी बाहर निकाला हुआ हैं और बगल में ही ढेर सारा ईटा रखा हुआ हैं।

इसका कलर पिंक और वाइट है और नीचे में ढ़ेर सारे पत्ते हैं।

टाइल्स के नीचे ढेर सारे घास है।

और इटे के बगल में एक बोर्ड है लिखा हुआ है इंडियन ऑयल ।

और बाहर में ढेर सारे सॉस रखे हुए है।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

और यहां पर एक पेड़ में ढेर सारा बल्ब गोल गोल बंधा हुआ है।

रोड के किनारे बॉर्डर किया हुआ है जो कि पीला और ब्लैक से है और रोड के किनारे पिलर भी लगा हुआ है।

यह एक रोड का दृश्य है रोड के किनारे किनारे बॉर्डर किया हुआ है।

और रोड के किनारे गाड़ी भी खड़ी है।

दुकान के बगल में एक बोर्ड है और बोर्ड पर हेयर एक्सपर्ट लॉरिअल लिखा हुआ है।

और हॉल में ढेर सारा पिलर भी लगाया हुआ है।

केबिन के टेबल पर एक बोटल रखा हुआ है।

इस दुकान में एक कपबोर्ड है और कपबोर्ड में शीशा का कवर किया गया है।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

और इसके दीवार में एक तार भी बंधा हुआ है।

और बिल्डिंग में ढेर सारे खिड़कियां हैं।